इस बगीचे की देख रेख एक माली करता है | यह माली फूलो में पानी --

शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ाया जाता है जिसे जुम्मा कहा जाता है।

इस मंदिर में बोहोत सारे आदमी आकर मन्नत भी मानते हैं।

इस को सफ़ेद कलर से पेन्ट किया गया है।

यह घर पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।

यह पहाड़ काफी बड़ा है। यह पहाड़ काफी कम ऊंची है। इस पहाड़ पर बहोत सारे पत्थर भी हैं।

ऊपर एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसके शरीर पर तौलिया रखा गया है।